देख सकता है यह भोलेनाथ का मंदिर है और बहोत बड़ा मंदिर है।

हेलो गाइस देख सकते हैं यहां काफी लोग काफी जबरजस्त दिखाई दे रहा होगा और काफी मस्त हैं इसमें हरा-भरा पेड़-पौधा हैं देख सकते--